ये लाल दरी बिछी हुई है बड़ा सा गेट है।

रही है इसमें मशीनें लगी हुई है।

यह इमेज एक कैफे की है जिसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

कुछ ने फल ले रखी है जिनमें पाइनएप्पल खरबूजा है।

सब्जी मंडी की है इसमें बहुत सारे कार्टून रखे हुए हैं इसमें --

इसमें कूलर भी दिखाई दे रहा है कुछ बॉटल्स भी रखी हुई है।

एक इमेज में फल की शॉप दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति आ जा रहे हैं इसमें कार ऑटो दिखाई दे रहे हैं।

ले रखी है इसमें एक घर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।